बहुत बड़ा है इस सैलून में बहुत सारे आदमी बाल कटाने दाढ़ी बनाने के लिए इस सैलून में आये हुए है यह सैलून में बहुत सारे आदमी आये है काफी सारे लोग यहाँ पे आये है लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बाल दाढ़ी बनाता है यह सैलून बहुत बड़ा है बहुत सारे आदमी यहाँ पे --

ये मैदान में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है यहाँ पे एक स्कूल भी है यहाँ पे सब लड़के क्रिकेट खेलने के लिए आये --

बोहोत सारे लड़कों की यहाँ पे भीड़ लगी रहती है अपने शारीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम आ --

यह एक दुकान है यह दुकान बहुत बड़ी है यह दुकान में इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस दुकान में मिलती है यह दुकान में सभी लोग सामान खरीदने के लिए आते है यह दुकान में बहुत सारी सामान मिलती है यह दुकान काफी बड़ी है।

पे शादी समोराह की फंक्शनस चल रही है स्टेज बनाये गए है यहाँ पे दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आये हुए है वरमाला हो रही है यह स्टेज को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है स्टेज में बहुत सारे आदमी चढ़े हुए है।